और काफी गहराई है पानी में और पानी देखो कितने अच्छे तरह से क्लियर दिख रहा है हमें।

ये देखिए बैंक है। बैंक में है ना काफी अच्छी तरह सब अपना वर्क कर रे है। यहां पे--

ये देख सकते हैं आप मैरिज गार्डन है इसमें काफी सारी चेयर लगी हुई है और काफी सारे मेंबर्स इसपे बैठे हुए हैं।

काफी अच्छा विंडो हैं और आसपास पेड़ भी हैं काफी प्यारी जगह हैं ठीक ठाक स्पेस हैं।

यहां देख सकते है चेयर है चेयर के पास टेबल है टैब चेयर पे डॉक्टर बैठा है और काफी सारे पेशेंट को चेक कर रा है और यहां पे --

यहां आप देख सकते गार्डन है गार्डन में काफी हरी हरी घास है पेड़ है बहोत ही प्यारी जगह लग रही है।

और काफी प्यारे इसमें सोफे लगे हुए है सोफे के साथ आप देख सकते है कुशन भी है बहोत ही प्यारी जगह है।

ये आप देख सकते है सामने काफी अच्छा साफ सूत्र प्यारा सा मैदान है उसके सामने बिल्डिंग है बिल्डिंग के पास एक और छोटी बिल्डिंग है।

ये आप देख सकते हो ऑफिस है ऑफिस पे टेबल लगी है टेबल के पास है ना ती तीन चेयर है।

जी ये आप देख सकते हैं रूम है बहोत ही प्यारा होटल रूम है यहां बेड है एल_ई_डी लगा --

और यहां पे देख लिजिए सूटकेस पडे हैं थ्री पीस और वैसे ज प्यारी प्यारी सॅंडल्स हैं बहोत ही प्यारी चीजे हैं।

देखिये यहां पे मंदिर है मंदिर में समाधि ले रखी है पंडित बैठे हैं।

रूम में चेयर लगी हुई हैं टू चेयर इधर है थ्री इधर है टैबल है एक जेंट्स खड़ा है।

और एक छोटे सी बच्ची को कैसे हाथ में कुछ दे रही है और काफी सारी और देखो कैसे है ना अपने फेस पे मास्क लगा रखे हैं।

और सब्जी भी आप देख सकते हैं उधर एक लेडिज भी बेच रही है ऊपर आप देख सकते हैं कैसे इसको कवर कर रखा है पर्दों से।

और यहां पे आप देख सकते हैं एक बंदा है झाड़ू लगा रहा है सफाई कर रहा है पेड़ पौधों की काफी अच्छे से कर --

यहां पे आप देख सकते हैं एंट्री गेट इसका कितना बड़ा है बहोत प्यार है और इसके अंदर आप देख सकते कितना अच्छा स्पेस है।

मुर्गियों के लिए उसमें पानी रखा हुआ है पास मे देखिये काफी अच्छी जगह है दोनों मुर्गी आराम से अपने खेल रहे --

ये आप देख सकते हैं यहां एक लेडिस खड़ी है बेंच लगी हुई है दोनों तरफ चेयर है।

यह देखिए कित्ता प्यारा घर है यहां पे और उसके बाहर उज्ज नजारा है ये देखने को मिल रहा है यहां पे देखो कित्ते प्यारे --